यह घर की तस्वीरें है यहां पे बहोत सारे--

कुछ व्हाइट कलर के कुछ ब्लैक कलर के एक आदमी गाड़ी से निकलकर--

यहां पे बहुत ही ज्यादा रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं।

यहां पे कुछ पर्दे भी लगाए गए हैं।

इसमें बहोत सारे सामान रखे हैं बहोत सारे डब्बे रखे हुए हैं यहां पर एक घड़ी लड़काई गई है।

यह एक मॉल की तस्वीर यहाँ पे बहोत सारी लेडीज कपड़े लटकाए गए जर्सी सूट गरम सूट --

यहां एक कपड़े की दुकान है यहां पे बहोत सारे कपड़े रखे हुएं सूट के कपड़े कु कुर्ते के कपड़े और भी बहोत सारे कपड़े यहां पे ए_सी लगा हुआ है।